कुछ लकड़ी का फर्निचर भी दिखाई दे रहा है आसमान का कलर ग्रे दिखाई दे रहा है।

यहां पर रेड टी-शर्ट में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

यहां पर कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर बलून दिखाई दे रहे है जिनका कलर रेड ग्रीन व्हाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक स्टार दिखाई दे--

पर कुछ बच्चे दिखाई दे रहें हैं यहाँ का फर्श का कलर ग्रीन ऑरेंज दिखाई दे रहा है। एक गमला दिखाई दे रहा --

एक व्हाइट कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है यहां पर कई सारे बांस दिखाई दे रहे है दीवार का कलर पिंक दिखाई दे रहा।

ब्लू दिख रहा है यहाँ पर कुछ चेयर दिखाई दे रही हैं जिनका कलर रेड --

कुछ लाइट का कलर ब्लू वाइट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कुछ एयर दिखाई दे रहीं हैं।